यहाँ एक शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं।

जैसे कि आप देख रहे है।

जिसमें से बहुत सारे शीशे के खिड़कियां लगाई गई है।

और इसमें बहुत सारे पोस्टर्स भी लगाए गए हैं।

दो व्यक्ति अपने अपने मछली को लेके आए हुए हैं मछली को बेचने के लिए और यहां कस्टमर्स भी आए हुए हैं।

जैसा की आप यहाँ देख पा रहे हैं।

जैसा की आप यहाँ देख रहे हैं।

यहाँ एक बहोत ही अच्छी और बढ़िया एक बरांडा है।

और यहाँ बहोत सारे स्कूटर रखे गए हैं।

इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही घने वाली पर्वत--